हरा दिखाई दे रहा है। दीवार बनी हुई दिखाई दे रही है। जिसपर दिखाई दे रहा है। उसका कलर हरा दिखाई दे रहा है। सीडी दिखाई दे रही है। पेड़ दिखाई दे रहा है।

पेड़ दिखाई दे रहे है अँड टावर लगा हुआ दिखाई दे रहा है दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है।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

पेड़ दिखाई दे रहे है। आसमान दिखाई दे रहा नीला सफेद दिखाई दे रहा है।

यह कोई टंगी हुई दिखाई दे रही है समान पे टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

रहे है यह खंबे दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है।